खेत दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक पाइप पड़ा हुआ हैं।

सामने ठेले दिखाई दे रहे है जिन पर पीले कलर के तिरपाल-- बंधी हुई है यहा पर ठेले का कलर लाल और नीला कलर का यहा पर बहोत सारा फल -फ्रूट दिखा --

आ--ह-दिखाई दे रही है और यहाँ अंधेरा है।

एक शॉप है जहा पर लाइट जल रही यहा पर बहोत सारी टी शर्ट और लोअर रखी हुई है यहा पर काच लगे हुए--

सामने बसे दिखाई दे रही है एक साइकिल दिखाई दे रही है साइकिल के साथ एक आदमी दिखाई दे रहा है यहां पर कुर्सी बनी हुई है --

वह यहाँ पर एक झुमर टंगा हुआ है जिसमे सफेद कलर की लाइटे जल रही हैं।